यहां पर एक प्लेट में मम चेरी रखी हुई दिखाई दे रही है कई चेरी उसके ऊपर टंगी नजर आ रही है।

दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है एक फोन मे बात कर रहा है।

यह एक क्लासरूम है यहाँ पर काफी सारे बेंच और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे है एक पंखा भी दिखाई दे रहा है दो खिड़कि नजर आ रही है।

यह एक गुपचुप और चाट की शॉप है यहाँ पर एक आदमी के हाथ मे चाट रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर काफी सारी फूलों की लड़िया टंगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है सामने एक बस दिखाई दे रही है।

और वो उसनके हाथ में मोबाइल उसने पकड़ा हुआ है।

यहा पर काफी बड़ी चट्टानें है दो चट्टानों के बीच में एक लड़का खडा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर की जाकेट और ब्लू कलर का जीन्स पेहना हुआ है रात का समय है।

यहाँ पर ये काफी सारी चेयर रखी हुई हैं जिस पर व्हाइट कलर के पर्दे डले हुए हैं।